यह फल है यह फल खाने मै बहोत मीठे होते है यहाँ मुझे फल भी दिखाई दे रहे है और बहोत सारे पत्ते भी दिखाई दे रहे है एक--

और और बहोत सारे छोटे बच्चो की यहाँ मुझे टायर भी दिखाई दे रहे है टायर भी दिखाई दे रहे है और छोटे बच्चो के खिलैाने भी दिखाई दे रहे है और बहोत सारी साइकिले भी दिखाई दे रही है।

ये मुझे टावर टाइप का लग रहा है यहाँ पर एक टंकी भी लगा हुआ है यहाँ से वहाँ तक सीढियाँ भी लगी हुई है।

यहाँ पर मुझे खाना दिखाई दे रहा है यहाँ पर सलाद वलाद भी है सब्जी वगैरह भी है दाल वगैरह भी चावल दिखाई दे रहै है।

पर ये एक ढक्कन के ऊपर रखे हुए है और ये पराठे है और मुझे टेबल भी दिखाई दे रही है और ये पराठे बहोत खाने मे बहोत अच्छे होते है।

गले को गधे को में बंद है यहाँ पर एक फुटबॉल भी दिखाई दे रही है बहोत सी चीजे दिखाई है बहोत सी चीज़े गधे भी दिखाई दे रहे है।

नाँव भी दिखाई दे रही है और यहाँ पर बहोत सी चीजे भी दिखाई दे रही है ऑडियो सेकंड भी दिखाई दे रहे है।

ये भी रखे हुए है फोटो भी पर्दे भी कुर्सी भी बहोत सी चीजे रखी हुई है एक बेड पर रखी हुई है यह एक फोन भी चार्ज पर लगा हुआ--

पर स्टूल भी एक पाप एक आदमी भी दिखाई दे रहा है बहोत सारे छज्जे भी दिखाई दे रहे है और फूल भी अलग-अलग कलर के है।